दुकान के अंदर बहुत सी कुर्सियां और मेज रखी हुई है।

और कुछ पुरुष बैठे हुए कार्य को देख रहे हैं।

यह एक बहुत सुंदर ग्राउंड है।

अउर साइड में एक खंभा दिखाई दे रहा है।

क्लासरूम के अंदर पीले कलर का पेंट हो रखा है।

साइड में बड़े बड़े वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ पुरुष मछलियों को काट रहे हैं।

और रास्ते में एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है जो कि काले कलर का है।

अउर साइड में बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

बैंक्वेट हाल को फूलों आउर लाइट से सजाया हुआ है।

और सामने एक रेड कलर का स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

अउर दो सफेद कलर की कार भी दिखाई दे रही है अउर दो बाइक भी दिखाई दे रही है।

यह एक बहुत सुंदर अस्पताल है।

और कुछ डॉक्टरों की गैंग दिखाई दे रही है।

छत के ऊपर बहुत सी बड़ी बड़ी सूर्य लाइट दिखाई दे रही है।

और साइड में एक नीले कलर की ड्रमी रखी हुई है।

और साइड में फूलों के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में एक कूड़े करकट की बाल्टी भी दिखाई दे रही है।

और एक मेज पर एक फाइल और फोन चाबी दिखाई दे रही है।

और एक कुत्ता पड़ा दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का है।

यहां एक बहुत सुंदर बढ़ई की दुकान है।

लाइब्रेरी के अंदर सफेद और तोतिया कलर का पेंट हो रखा है।

दुकान की दीवार पर ब्लैक कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक बहुत सुंदर नहर है।

घर को फूलों और लाइट से सजाया हुआ है।

दुकान के अंदर बहुत सी राखियां अऊर अलग अलग प्रकार के फोटो रखे हुए हैं।

जिनके पास में बैठने के लिए पटडी रखी हुई है।